जालिया भी दिखाई दे रही है यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए है।

यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे बैनर लगा है उसपे लिखा हुआ है माँ अम्बे फोटो कॉपी एंड स्टेशनरी यहाँ पे स्पोर्ट पेन कार्ड वाहन बीमा गिफ्ट कार्नर --

यहाँ पे एक काले रंग की स्कूटी जैसी कुछ दिख तीन पहिये वाली गाडीयां दिखाई देवाइं हैं और एक सामने ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

पेड भी लगे हुए हैं लाइट के तार भी दिखाई दे रहे है पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बहोत पेड़ दिखाई दे रहा है आगे भी बहोत से पेड़ है और छोटे पेड़ है बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है छोटी छोटी घास भी जमी हुई है उम्म दीवार पर भी घास जमी हुई है आसमान भी दिखाई दे रहा है।